व्हाइट कलर का कवर्ड बना हुआ है कांच का जिसमें कुछ दवाइयां नजर आ रही है रेड कलर के बोर्ड है।

रेड और व्हाइट पर्दा लगा हुआ नजर आ रहा है जमीन में कुछ सामान है।

सामने कपड़े की दुकान नजर आ रही है।

दूसरे में जैक एंड जॉन्स तीसरे में रॉकर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है।

गैस स्टोव दिख रहा है कुछ बर्तन नजर आ रहा है कुछ लड़के खड़े हुए हैं।

सामने एक रूम नजर आ रहा है येलो कलर का गेट है।

फर्स्ट फ्लोर में येलो रंग से रायपुर जंक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है साइड में व्हाइट कलर की बिल्डिंग है जिसमें सीजन लिखा है काले रंग से।

जिसमें कुछ चीज रखे हुए है पिंक व्हाइट बैलून नजर आ रहा है फ्लावर्स पॉट पॉट दिख रहा है ब्लैक कलर का गेट नजर आ रहा हैं।

बहोत बड़ा ग्राउंड है जिस पे लोग काम करते हुए दिख रहे हैं।

साइड मे रंग की कार नजर आ रही है।

कुछ पंडाल लगे हुए नजर आ रहे हैं जिनमें दुकाने बनी हुई--

सामने एक काँच की खंड बने हुए है जिसमे प्लास्टिक फ्लॉवर्स दिखाई दे रहे हैं ब्राउन कलर का।

भूरे रंग कर टेबल दिखाई दे रहा है जिस पर लोग खाना खा रहे हैं। साइड में ब्लैक कलर के चेयर नजर आ रहे हैं।

लकड़ी की दीवाल बने हुए हैं बाहर कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

ग्राउंड है दीवाल में बड़े मिरर लगे हुए हैं ए_सी और बॉक्स मुझे नजर आ रहे हैं।